काफी अच्छी सजावट की गई है सोफे लगे हुए --

काफी रंग बिरगें सी बैचेंस लगी हुई है।

यहाँ हमें एक थाली नजर आ रही है जिसमे स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है।

सूखी सब्जी है सलाद है जिसमें प्याज ककड़ी नींबू हरी मिर्ची --

और यहाँ काफी सारे कप रखे हुए है माइक्रोवेव रखा हुआ हैं।

छाप पर एक लड़का बैठा हुआ है और वहाँ --

राखिया टंगी हुई है कुछ पैकेट में टंगी हुई है रखिया कुछ धागे वाले राखियाँ--

चर्च में काफी अच्छी सजावट की गयी है चर्च --

यहाँ हमें एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है जिसमें दो व्यक्ति खड़े हुए है काफी सारे बेड लगे हैं।

यहाँ हमें एक पानी का झरना -सा नजर आ रहा हैं।

जो कि नीले रंग से चददरों से बनी हुई है।

एक व्यक्ति सफ़ेद कलर का शर्ट मे नज़र आ रहा है जिसके हाथो मे एक झोला नज़र आ रहा है।

जिन्होंने सर पर डलिया रखी हुई है देखने से लग रहा है वहाँ पूजा करने जा रहै हैं।